ठो एक दुकान है और ये दुकान में माला--

ने बहोत सारा लाइट और बहोत ही मस्त से डिज़ाइन किया हुआ है।